इस फोटो में सामने एक चाय का दुकान दिख रहा है।

सामने कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

सामने कुछ पेड़ पौधे और दिख रहे हैं।

और सामने कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक ड्रोन दिख रहा है।

नीचे की तरफ कुछ डिजाइन बने हुए हैं।

और सामने खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

सामने एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और ट्रेड मिल्स भी रखी हुई हैं।

इस फोटो में एक लड़का चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पर कुछ कागज पड़े हुए हैं।

पीछे कुछ बड़े सी नहर दिखाई दे रही है।

पीछे कोहोर दिखाई दे रहा है।

पीछे रखे हुए है कुछ अलमारीयो में डिब्बे दिख रहे हैं।

नीचे की तरफ कुछ फोन नंबर भी मेंशन किए हुए हैं।

पास में ही नाव में कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं।

जिनके ऊपर बाल्टियां और रखी हुई है।

पीछे कुछ बैलून पड़े हुए हैं।

और कुछ दरवाजे खाली लगे हुए हैं।

एक पीछे कमरा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक कमरा और है जिस पर कुछ लिखा गया है।

जिसके पास एक तसला रखा हुआ है।

और एक आंगन में खड़ा हुआ पेड़ दिख रहा है।

जो कि सफेद रंग की हैं और गुलाबी रंग की हैं आगे दो केसरी रंग की कुर्सी पड़ी हुई हैं।

सामने एक पर्दा नीचे की तरफ लगा हुआ है जो की खंभे से अटा हुआ है।

इसमें कुछ शीशे के दरवाजे दिख रहे हैं।

और नीचे वाली रैक में कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

और ऊपर कुछ शैंपू के पाउच रखे हुए हैं।

सामने कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं जो की एक मछली मार्केट है।

कुछ लोहे के छोटे छोटे बंबे लगे हुए हैं।

क्यूंकि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है।

सामने एक लड़का बात करता हुआ फोन पर दिखाई दे रहा है।

एक अदर साइड खड़ी हुई है एक सामने खड़ी हुई है।

जिनके अंदर बहुत सारे रूम दिखाई दे रहे हैं।

जिनमें कुछ अलमारी बनी हुई है।

और एक डेस्क के ऊपर लगी हुई पेंटिंग भी दिख रही है।

इस फोटो में एक बाइक शोरूम दिखाया गया है।

मेज के दोनों तरफ बड़े बड़े गुड्डे लटके के हुए हैं।